कुर्सी का रंग लाल है और ब्लैक कलर का है टेबल पे एक जग भी रखा हुआ है टेबल का रंग ऑरेंज कलर का है और --

एक मजदूर जो कि पीला रंग का टी शर्ट पहना और जींस पहना हुआ वो चुपचाप खड़ा है और बाकी सारे मजदूर टॉली --

जैसा की मैं देख पा रही हूं ये पुराना बगीचा का दृश्य दिखाया गया हैं इसमें हरा रंग का काटा जैसा दिख रहा है।

और घर देखने में बहुत ही खूबसूरत है ऊथिया रंग का है ऑरेंज कलर का है और छज्जा--

और छज्जा भी दिखाया हुआ है बहुत ही सुंदर पानी का टंकी लगा हुआ है घर के ऊपर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक बाजार का दृश्य दिखाया गया है यहां एक ब्लू कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमें बंधन बैंक लिखा हुआ है।

वो आदमी लाल रंग का स्वेटर पहना है ब्लू रंग का जींस पहना है और अपने नाखून को देख रहा है --

जहां पे बाहर में पी_यू_एस_एस लिखा हुआ है और फोन पे का भी लिखा हुआ है दो कुर्सी लगा हुआ है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ दृश्य में एक पूरा आदमी हसता हुआ हाथ में किताब लिया हुआ दिखाई दे रहा है।

छह कुर्सी लगे हुए हैं नीचे में मैट भी लाल रंग का है ममता ज्वेलर्स जो फूल से सजाया हुआ है एक आदमी म --

मोबाइल से फोटो लेता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पीछे गाड़ी भी है और बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं कुर्सी का सीट ब्लैक कलर का सिल्वर कलर का

मंदिर बहुत सुंदर सजाया गया है और मंदिर को बलून से वाइट और पिंक बलून से सजाया गया है बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

एक लड़का खड़ा है जो ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ पॉकेट में हाथ रखा हुआ है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक बड़ा मैदान का दृश्य दिखाई दिया है यहाँ पर बहुत सारा --

वाइट कलर का ड्रेस है और कुछ बच्चे लाल रंग का ड्रेस और स्कर्ट भी लाल रंग का पहने हैं एक बच्चा --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक दवा खाना का दृश्य दिखाया गया है बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लू रंग का --

बोर्ड लगा लगा है उसके ऊपर लिखा है जीवन सुरक्षा केंद्र दावा खाना फार्मेसी और--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह एक मंदिर का दृश्य दिखाया गया है और मंदिर बंद हुआ है रात का समय हैं।

लगा हुआ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है फोटो और वो बहोत ज्यादा खिलौना भी लगाया हुआ है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक स्कूल के बाहर का दृश्य दिखाई दिया है यहाँ पे एक पड़े है पड़े का --

और बहुत सारे आदमी भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हैं एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहना है।

मंदिर का रंग व्हाइट कलर का है दूसरे मंदिर का रंग पीला कलर का है जहां पे--

वहाँ पे व्हाट्स ऐप नंबर भी लिखा हुआ है नंबर है नाइन डबल वन डबल थ्री फोर थ्री सिक्स सिक्स थ्री ।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक रोड का दृश्य दिखाया गया ऊपर में ब्रिज भी है एक गाड़ी चल --

स्कूटी का रंग ब्लैक है और बाइक का रंग भी ब्लैक है साइकिल लगा हुआ है बलून से सजाया हुआ है ऑरेंज और वाइट से बलून से सजाया है।

मनी प्लांट से सजाया हुआ है सजावट बहुत ही सुंदर लग रहा है।